कलर पर्पल ब्लू मैरुन व्हाइट ग्रे कलर हैं।

एक पंखा लगा है लाल कलर का टेबल --

नीचे वॉश बेसिन बना है और उसके बाद एक बाक्स बना है।

एक गाड़ी खड़ी है जिस पर मिल्क वैन लिखा है।

पीछे राष्ट्रवादी पब्लिक स्कूल लिखा है।